नाक को पकड़कर सास को अप अँड डाऊन कर रही है सामने मे बहुतबड़ा मिरर रखा हुवा है --

ये एक डान्स क्लास रूम है यहाँ पर कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं सामने वाली ने ग्रीन कलर का--

पगड़ी पहने हुए है और सफेद कलर का कुर्ता और धोती पहने हुए खड़े है सामने मे कुछ रथ ऐसा आ रहा है।

ये तस्वीर किसी बाहर देश का है जो ब बरफ से बिल्कुल भी ढका हुआ है और लोग यहा पर--

पानी पी रहा है और पीछे पहाड़ का बहुत बड़ा चट्टान है।

ये एक रोड का तस्वीर है यहा पर टोटों चल रहा है और दो बाइक और स्कूटी लगा हुआ है।